फर्नीचर में फूल लौकी तब काउ तब-तरबूज आदि रखे हैं।

यह एक पार्क है पार्क में घांस है हरी भरी |

यह एक मे मैदान है। मैदान में दो गधे खड़े है।